नमस्कार !
numerical interpolation पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में हम सीखेंगे कि:
भिन्न numerical interpolation algorithms के लिए scilab कोड कैसे बनाते हैं
दिए गए डेटा पॉइंट्स से फंक्शन की नयी वैल्यू की गणना कैसे करते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
और scilab वर्शन 533
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको scilab की बुनियादी जानकारी और numerical interpolation का ज्ञान होना चाहिए
scilab सीखने के लिए कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित ट्यूटोरियल्स को देखें
numerical interpolation ज्ञात डेटा पॉइंट्स के discrete set की रेंज के अंदर नए डेटा पॉइंट्स बनाने का एक मेथड है
हम न्यूमेरिकल मेथड्स प्रयोग करके इंटरपोलेशन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं
lagrange interpolation में
हम n पॉइंट्स से n – 1 डिग्री के पॉलीनॉमिअल को पास करते हैं
फिर हम वो अद्वितीय n आर्डर के पॉलीनॉमिअल y of x को ज्ञात करते हैं जो डेटा सैंपल्स को इंटरपोलेट करता है
हमें 9 95 और 11 की प्राकृतिक लॉगरिथ्म वैल्यूज़ दी हुई हैं
हमें 92 की प्राकृतिक लॉगरिथ्म वैल्यू ज्ञात करनी है
अब lagrange interpolation method प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करते हैं
अब lagrange interpolation के लिए कोड देखते हैं
हम आर्ग्युमेंट्स x 0 x f और n के साथ lagrange फंक्शन को परिभाषित करते हैं
x 0 अज्ञात interpolation पॉइंट है
x वो वेक्टर है जो डेटा पॉइंट्स रखता है
f वो वेक्टर है जो सम्बंधित डेटा पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ रखता है
और n interpolating पॉलीनॉमीअल का ऑर्डर है
हम m और वेक्टर n को इनिशिअलाइज़ करने के लिए n उपयोग करते हैं
interpolating पॉलीनॉमीअल का ऑर्डर बनाये गए नोड्स की संख्या को निर्धारित करता है
फिर हम अंश और हर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए lagrange interpolation formula लागू करते हैं
फिर l की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर को डिवाइड करते हैं
हम दिए गये डेटा पॉइंट पर फंक्शन y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए l उपयोग करते हैं
अंततः हम l और f of x की वैल्यू प्रदर्शित करते हैं
अब हम फाइल को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
उदाहरण को हल करने के लिए scilab कंसोल खोलें
अब डेटा पॉइंट्स वेक्टर को परिभाषित करते हैं
कंसोल पर टाइप करें:
x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 90 कॉमा 95 कॉमा 110 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर टाइप करें: f इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 21972 कॉमा 22513 कॉमा 23979 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर टाइप करें x ज़ीरो इक्वल्स टू 92
enter दबाएं
अब एक quadratic polynomial interpolating polynomial उपयोग करते हैं
टाइप करें n इक्वल्स टू 2
enter दबाएं
फंक्शन को कॉल करने के लिए टाइप करें:
y इक्वल्स टू lagrange ब्रैकेट खोलें x ज़ीरो कॉमा x कॉमा f कॉमा n ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
x इक्वल्स टू 92 पर फंक्शन y की वैल्यू प्रदर्शित होती है
अब newtons divided difference method देखते हैं
इस मेथड में divided differences recursive method उपयोग होता है
यह lagrange method की तुलना में कम बार गणना का उपयोग करता है
इसके बावजूद जैसे lagrange method में वही interpolating polynomial बनता है
अब divided difference method उपयोग करके इस उदाहरण को हल करते हैं
हमें डेटा पॉइंट्स और उन पर फंक्शन की सम्बंधित वैल्यूज़ दी गयी हैं
हमें x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है
अब newton divided difference method के लिए कोड देखते हैं
scilab एडिटर पर newton अंडरस्कोर divided डॉट sci फाइल खोलते हैं
हम आर्ग्युमेंट्स x f और x 0 के साथ फंक्शन newton अंडरस्कोर divided को परिभाषित करते हैं
x एक वेक्टर है जो डेटा पॉइंट्स रखता है
f सम्बंधित फंक्शन वैल्यू है और
x 0 अज्ञात इंटरपोलेशन पॉइंट है
हम वेक्टर की लम्बाई ज्ञात करते हैं और फिर n के बराबर रखते हैं
वेक्टर की पहली वैल्यू a ऑफ़ 1 के बराबर रखी जाती है
फिर हम divided difference algorithm लगाते हैं और divided difference table की गणना करते हैं
फिर हम न्यूटन पॉलीनॉमिअल की कोफिशिएंट सूची को ज्ञात करते हैं
हम दिए गए डेटा पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कोफिशिएंट सूची को जोड़ते हैं
newton अंडरस्कोर divided डॉट sci फाइल को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
scilab कंसोल खोलें
c l c टाइप करके स्क्रीन को क्लियर करते हैं
enter दबाएं
अब डेटा पॉइंट्स वेक्टर प्रविष्ट करते हैं
टाइप करें: x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 कॉमा 25 कॉमा 325 कॉमा 4 स्क्वायर ब्रैकेट खोलें
enter दबाएं
फिर फंक्शन की वैल्यूज़ टाइप करें
f इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 05 कॉमा 04 कॉमा 03077 कॉमा 025 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
टाइप करें x 0 इक्वल टू 3
enter दबाएं
फिर निम्न टाइप करके फंक्शन को कॉल करते हैं
i p इक्वल्स टू newton अंडरस्कोर divided ब्रैकेट खोलें x कॉमा f कॉमा x ज़ीरो ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
x =3 पर y की वैल्यू दिखती है
अब इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में
हमने सीखा interpolation मेथड्स के लिए scilab कोड बनाना
हमने नए डेटा पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करना भी सीखा
lagrange method और newtons divided difference method प्रयोग करके अपने आप इस प्रश्न को हल करें
नीचे प्रदर्शित लिंक पर उपलब्ध वीडिओ देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद